जिसमें अलग अलग रंग की मिट्टी और पत्थर है।

बाद और कुछ सफेद सिल्वर और ग्रे रंग की कारस है।

पर पंखे लगे हुए हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक इमारत दिख रही है जो सफेद और लाल रंग की है।

ये एक बड़ी इमारत लगती है जिसमें कोई खिड़कियां है।